केक है चोकॉबार है।

रेल है पटरीयाँ है ।

कुर्सी है फूल है दूल्हा है लाइट है ।

तार है बिल्डिंग है दुकान है ।